अब जैसा की आप लोग इस तसवीर मे देख प रहे है ये बेगुसराई के बोहत ही बेहतरीन कॉलेज मे से एक कॉलेज है जोकी आरएसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेउसराई मे स्थित है।